झाड़ियो के पास में चारों तरफ पेड़ है जो सुख रखे हैं।

के अंदर कई सारे गोल कलर में पाइपे लगी हुई है।

एक बेंच के पास बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं।

उसके आगे एक स्टैचू रखा हुआ है जिसमें कई सारे औरतें और बच्चे आदमियां है।

यह एक कार्यालय है जिसके आगे सेवायोजन कार्यालय लखीमपुर खीरी लिखा हुआ है।

कमरे में एक पर्दा लगा हुआ है और एक टेलीफोन रखा हुआ है।

रस दूध डेयरी लिखा हुआ है जिसपे मोबाइल नंबर एड्रेस कई सारी चीज अंकित हुई हैं।

उसके पड़ोस में झाड़ियां लगी हुई है जो हरे कलर की है।

यह कोई एक पुराना किला है जो लाल कलर से पुता हुआ है।

कोई ऑफिस या कार्यालय है इसमें एक घड़ी लगी हुई है।